गार्डन के साइड में झाड़ा हैं और बीच में एक लैंप का खंभा भी है कुछ लोग भी हैं।

और एक आदमी चलकर जा रहा है उस तरफ--

नीचे जमीन पर सफ़ेद रंग की टाइल्स हैं एक बस बिस ब--

यहाँ पर कुछ लड़कियाँ डांस कर रही हैं उन लड़कियों ने लाल रंग के कपड़े पहने हैं।

और फ्रूटी की बोतलें रखी गई हैं।

यहाँ पर खेलने के बहुत सारी चीजें हैं छोटे बच्चों को खेलने के लिए झूले हैं अंदर--

कार्टून के बाजू एक टेबल है टेबल पर भी कुछ सामान रखा गया है।

यहाँ पर पीले रंग की दीवार दिख रही है और सफेद रंग के बड़े-बड़े गोले हैं।

और पीले रंग की दीवार पर एक ए_ सी_ है नीचे बैठने की कुर्सियाँ हैं और टेबल है।

उस पर पराठे रखे हुए हैं लगभग तीन पराठे हैं।

ये रॉयल एनफील्ड गाड़ी है उसके पीछे एक सिल्वर कलर के डब्बे भी हैं।

उसके ऊपर एक नदी के अंदर एक ऊपर बहोत बड़ा ब्रिज है।